यह वाटर पार्क बहुत ही सुंदर है।

डांस भी कर सकते हैं।

इस स्कूटर को मिस्त्री बना रहें हैं।

यह दुर्गा पूजा का पंडाल है ।

यह गाड़ी यह मार्केट बहुत ही भीड़ा भीड़ वाला मार्केट --

यहाँ पर कई सारे अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं।